यह हरा भरा नजर आ रहा है।

और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है और दो कट्टे रखे भी नजर आ रहे हैं।

सामने एक व्यक्ति गैरेज मे बाइक का काम करते नज़र आ रहा है।

एक बाइक भी खड़ी नजर आ--

सामने पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

और खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है और हरा भरा नजर आ रहा है।

और एक व्यक्ति लाल कलर का कोट पहने हुए दिखाई दे रहा है।